बाउंड्री के बाहर दो पेड़ दिख रहे है।

बोर्ड में चिल्ली आउट लिखा गया है।

ऐसा लग रहा है ये ब्यूटी ब्यूटी पार्लर है ।

और कुछ पेड़ दिख रहे है जो हरे-भरे है ।

सड़क के उस पार एक गड्डा है छोटा सा जिसमें पानी भरा हुआ है।

एच.डी.अफ.सी. बैंक की शाखा दिख रही है।

एक ई-रिक्शा दिख रहा है जिसपे तीन आदमी बैठे हैं।

एक बिल्डिंग दिख रही है जो सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग है।

रोड दिख रही है एक बाइक आ रही है ।